इस फ़ोटो में हमे एक घर नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारी गाय और भैंसें नजर आ रही हैं एक सामने की तरफ गाय है जिसका कलर सफेद और ब्लैक है।

जिसका कलर सफ़ेद है बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग पीला है और नील कलर से इसपे लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक पार्किंग नजर आ रही है जिसमें सफेद कलर की बहुत सारी वेने खड़ी हुई है और कार खड़ी हुई है।

इस फोटो मे नीचे की तरफ हमे एक मकान दिख रहा है और सीढ़ियां दिख रही है जो पहाड़ की ओर जा रही है।